फूल लगा हुआ है। रोड दोनों साइड में फूल लगा हुआ है। .

पेड़-पौधा है साइड साइड में।

झोला में रखा हुआ है।